जी इसमे हम देख रहे है कि कोई मार्केट है बड़ी-सी जहां पे बहोत सारी गदर और इंसान नजर आ रहे है।

इस इमेजेज में हम देख रहें हैं की ऊपर की तरफ हमें आसमान नजर आ रहा है दो तीन आदमी हैं जो की डलिया लेके बैठे हुए हैं।

हुआ है नीचे बहोत सारी बोरियां रखी हुई है किराने के सामान प्याज रखे हैं आलू रखे हैं और भी सामान रखा हुआ है अंदर दो आदमी बैठे हुए हैं।

इसमें हम देख रहे है कि हमें ऊपर तरफ पे स्काई ब्लू कलर का आसमान नज़र आ रहा है कुछ बादल भी दिखाई दे रहे है देहेंगे एक ब्रिज बना हुआ है बड़ा सा।

अंदर की तरफ पे बाइक्‍स दिखाई दे रही हैं कुछ फोर व्हीलर गड़ियां भी रखी हुई हैं पोस्टर लगा हुआ है जिसपे कुछ लिखा हुआ है एक बड़ा-सा गेट है सामने से सड़क है।

इसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है व्हाइट कपड़ो मे और हम देखेंगे रेस्क्यू वाले भी कुछ इंसान दिखाई दे रहे है हमे।

औ कुछ घास लगी हुई है कुछ गार्डन वगैरह है। नीचे की तरफ कुछ कन्स्ट्रक्शंस का काम चल रहा है इसमें लकड़ी की सीढियां भी बनके रखी हैं यहाँ पे --